जिसका उपयोग कई त्योहारों पूजा-पाठ और अन्य जगहों में किया जाता है।

जहाँ पर हर प्रकार के फूल गुलाब गेंदा और अन्य प्रकार के फूलों की माला तैयार की जाती हैं।

जो कि एक रनवे पर --